java में dowhile loop के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
इस tutorial के लिए हम प्रयोग करेंगे
इस tutorial को समझने के लिए आपको java में while loop का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो उचित tutorials के लिए कृपया हमारी निम्न website पर जाएँ
यहाँ dowhile loop के लिए एक structure दिया गया है
ध्यान दें कि यह while loop के समान है
इसके दो भाग हैं
प्रथम loop running condition है और दूसरा loop variable है
एकमात्र अंतर यह है कि condition को do block के बाद लिखा जाता है
और इसलिए condition की जांच do block के अंदर लिखे गए कथन के निष्पादन के बाद की जाती है
अब एक उदाहरण देखते हैं
eclipse पर जाएँ
यहाँ हमारे पास eclipse ide है और शेष code के लिए skeleton की आवश्यकता होती है
हमने एक class dowhiledemo बनाया है और इसमें मुख्य विधि को जोड़ दिया है
हम dowhile loop का प्रयोग करके 1 से 10 तक की संख्याओं को print करना चाहते हैं
type करें
int n equalto 1
n loop variable है
फिर do type करें
ब्रैकेट्स खोलें और बंद करें
ब्रैकेट्स के अन्दर system out println n; लिखें
हम n का मान print करेंगे और फिर इसमें वृद्धि करेंगे n equalto n plus 1;
और हम ऐसा करेंगे अगर
n या तो 10 से कम है या बराबर है
ब्रैकेट्स के बाहर type करें while परेन्थिसिस के अन्दर n less than equalto 10
और semicolon का प्रयोग करके dowhile को बंद करें
कार्यान्वित code को देखते हैं
सेव और run करें
हम देखते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं को printed किया गया है
अब देखते हैं कि code को कैसे निष्पादित करना है
पहले मान 1 printed किया है और फिर n 2 हो जाता है
और फिर condition की जांच की है
चूँकि यह true है इसलिए पुनः 2 printed होता है और n 3 हो जाता है
और यह तब तक जारी रहता है जब तक सभी 10 संख्याएं printed होती है और फिरn का मान 11 हो जाता है
जब n = 11 होता है तो condition असफल हो जाती है और loop रुक जाता है
अब घटते क्रम में 50 से 40 तक संख्याएं print करें
अतः हम 50 से शुरू करते हैं
n = 1 को n = 50 से बदलें
चूँकि हम एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या की ओर loop कर रहे हैं हम loop variable को घटाते हैं
अतः n = n + 1 को n = n1 से बदलें
हम तब तक loop करते हैं जब तक n 40 के बराबर या उससे अधिक है
अतः condition को n> = 40 से बदलें
output पर एक नजर डालते हैं
सेव और run करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि 50 से 40 तक संख्याएं printed हो गई हैं
अब dowhile loop का प्रयोग करके एक भिन्न logic का प्रयोग करते हैं
दी गई एक संख्या में हम पता लगायेंगे कि यह एक पूर्ण वर्ग है या नहीं
सर्वप्रथम main method को clear करें
फिर type करें int n = 25;
हम देखेंगे कि n का मान एक पूर्ण वर्ग है या नहीं
इसके बाद type करें int x = 0;
यदि एक संख्या पूर्ण वर्ग है तो हम x का प्रयोग करेंगे उस संख्या को संचित करने के लिए
फिर do type करें
ब्रैकेट्स को खोलें और बंद करें
ब्रैकेट्स के अन्दर x बराबर x plus 1
और ब्रैकेट्स के बाहर
while परेन्थिसिस में x into x <n
और एक सेमीकॉलन का प्रयोग करके dowhile को and करें
जब तक x इन टूx n से कम है हम x के मान को बढ़ाना जारी रखते हैं
अतः जब loop रुक जाता है तो इस स्थिति का विलोम true होगा
जिसका अर्थ है कि या तो x इन to x n के बराबर होना चाहिए
या इसे n से बड़ा होना चाहिए
यदि x इन to x n के बराबर है तो संख्या पूर्ण वर्ग है
यदि यह n के बराबर नहीं है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है
अतः अंततः हम condition को print करते हैं
system out println x * x == n;
code को क्रियान्वित करके देखते हैं
सेव और run करें चूँकि हम देख सकते हैं कि output true है
दूसरे पूर्ण वर्ग के साथ इसका प्रयोग करके देखते हैं
n = 25 को n = 49 से बदलें
सेव और run करें
हम देखते हैं कि हमें पुनः true प्राप्त होता है
एक संख्या के साथ इसका प्रयोग करके देखते हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है
49 को 23 से बदलें सेव और run करें और
हमें आशा के अनुरूप false प्राप्त होता है
अब देखते हैं कि क्या होता है जब n का मान 0 हो
n = 23 को n = 0 से बदलें चूँकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है अतः हमें false प्राप्त होना चाहिए
अब code को चलाते हैं
सेव और run करें
हम देखते हैं कि हमें आशा के अनुरूप false प्राप्त होता है
यह होता है क्योंकि condition से पहले भी
x इन टू x n से कम है जाँचा गया है x का मान बढ़ गया है और यह 1 है
loop condition fails हो जाती है और loop नहीं चलता
इस प्रकार dowhile loop का प्रयोग करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि 0 को एक पूर्ण वर्ग नहीं माना जाता है
इस प्रकार dowhile loop को बहुत सी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग किया गया है
विशेष loop से जब loop को कम से कम एक बार अवश्य संचालित होना चाहिए
इसके साथ हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गया हैं
इस tutorial में हमने सीखा
dowhile loop और इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में
इस tutorial के लिए एक नियत कार्य के रूप में निम्नलिखित समस्याओं को हल करें
एक binary संख्या दी गई है इसका decimal समकक्ष ज्ञात करें उदाहरण: 11010 => 26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
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दिए गए link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद